थाना भवन पीछे की तरफ आसमान नीचे नीले है गेट दिखाई दे रहे--

ये चित्र चर्च के अंदर दिखाई दे रहा है सामने अ नीले सफेद कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं चर्च में बहुत से व्यक्ति बैठे खड़े हुए हैं और बैठे हुए कुछ व्यक्ति बाते कर रहे हैं कुछ व्यक्ति फोटो ले रहे हैं।

इस चित्र में एक सुन्दर गुफा दिखाई दे रही है पीछे एक अ व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है किसी मन्दिर की गुफा है इसमें एक रेलिंग भी बनी दिखाई दे रही है ऊपर से कुछ रोशनी नज़र आ रही--

ये चित्र एक बड़े तालाब का नजर आ रहा है इसमें बोहोत सारी नांव खड़ी है जिस पे एक झंडा लगा है नारंगीरिंग रंग का सामने नीला आसमान नजर आ रहा है दूर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बस दिखाई दे रही है उसमें नम: शिवाय लिखा है ।

जो बहुत सुन्दर नज़र आ रहे है हरा कैंप कलर अ कलर हरा दिख--

ये चित्र अ मार ग्रे अ ग्रेओजीयस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च का दिखाई दे रहा हैं।

चित्र कैफ़े का नज़र आता हैं साउथ इंडियन रेस्टौरेंट अंदर बहोत सी लाइटे दिखाई दे रही हैं कुछ कुर्सिए हैं बाहर का चित्र बाहर का चित्र हैं जिसमे पेड़ भी दिखाई दे रहा--

इस चित्र में किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय दिखाई दे रहा है गेट नंबर एक केलो नदी --

हरा-हरा दिखाई दे रहा है सामने गिट्टी पड़ी हुई है।